उनके बगल में एक डिब्बा भी रखा गया है उसमें चॉकलेट भी रखें गए हैं।

यह एक मछली का दृश्य दिया गया है यहां पे बहुत सारे मछली दिखाई दे रही है।

ये एक हॉस्पिटल का दृश्य दिया गया है यहां पे एक काउंटर भी दिखाई दे रही है।

सामने में एक दरवाजा भी दिखाई दे रही है नीचे में बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे है और नीचे में बहुत सारा घास भी जमे हुई है।

और धान का कलर हरा है नीचे में बहुत सारे पानी भी जमे हुए हैं।

यहां पे एक पर्दा भी लगाया गया है जो कि अभी मोड़ा हुआ है।

टेबल के ऊपर ग्लास भी रखे हुए हैं और बोतल भी रखी गई है।

बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुवे हैं और दीवार का कलर हरा है।

यह एक दुकान का दृश्य दिया गया है यहां पे बहुत सारे कंबल रखे गए हैं कंबल के ऊपर कुछ तकिए भी रखे गए हैं।

यह एक दवा दुकान का दृश्य दिया गया है।

यहां सीढ़ी के ऊपर बहुत सारे पौधे भी रखे गए हैं।